यह पे स्टेट बैंक का ऐ.टी.एम है ऐ.टी.एम के अन्दर भी बहुत सारे लोग है और ऐ.टी.एम के बाहर भी बहुत सारी महिलाये--

और एक आदमी को एक चेयर पे बिठाया हुआ है।